बहुत सा पेड़ दिखाई दे रहा हैं और घर भी दिखाई दे रहा हैं सफेद कलर का।

और पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

टेबल दिखाई दे रहा है सफेद कलर का और एक बिना दिखाई दे रहा है रेड कलर का और एक बाइक दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

यहां में एक घर दिखाई दे रहा है सफेद कलर का और खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है।

एक दुकान है जो ग्रे और सफेद कलर से बनाया गया है।

दो लड़का दिखाई दे रहा है जो एल्लो और सफेद ट रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ हैं।

और बहुत सारा लाइट दिखाई दे रहा है और बहुत सारा बॉक्स दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का।

जैकेट पहना हुआ है सफेद और ब्राउन और ब्लैक कलर का और बहुत सारा बाइक दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा शीशा दिखाई पड़ रहा है।

जो ब्लैक और रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है और जूता भी दिखाई दे रहा है ब्लैक सफेद कलर का।

यहां मैं एक गर दिखाई दे रहा है।

सफेद कलर और ब्राउन से बनाया गया है।

फिंसिंग दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का जो लोहा से बनाया गया है।

और फेसिंग भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का जो लोहा से बनाया गया है और रोड दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का।

चप्पल दिखाई दे रहा है सफेद कलर का जो प्लास्टिक से पैक करके रखा हुआ है और दो जूता--

और इसमें बहुत सारे फैन दिखाई दे रहा हैं ग्रे और डार्क ग्रे कलर का कुर्सी दिखाई दे रहा है सफेद कलर का।

और बुत सारा फ्लॉवर दिखाई दे हैं और बुत सारा कुर्सी दिखाई दे रहा हैं रेड और--

और एक घर दिखाई दे रहा है रेड कलर का और बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है सफेद कलर का।

ये एक रेस्टोरेंट है जो सफेद ग्रीन और पिंक कलर से बने गए हैं।

दिखाई दे रहा है जो रेड और सफेद कलर का है।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

ये एक घर है जो सफेद कलर से बनाये गया है बहुत सारा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा तार भी दिखाई दे रहा है।

जो प्लास्टिक से बनाया गया है और बहुत सारा बाइक दिखाई दे रहा है रेड और ब्लैक कलर का।